यह जो जगह है यह एक मार्केट का है जहाँ पर आईसा--

मतलब पूजा से रिलेटेड सारा सामान मिलता है।

और यहाँ पर कुछ लोग पोजीशन में खड़े हैं।

और यहाँ पर रूम काफी चारों तरफ से पैक्ड है।

ये जो जगह है ये एक पूजा स्थल है जो कि कह सकते है कि बौद्ध धर्म का है यहाँ पर बुद्ध भगवान की --

इसके आसपास दो मूर्ति और रखा गया है।

रेस्टोरेंट का है जहाँ पर--

दो आदमी बैठे हुए हैं और इसके दीवार पर--

कुछ पेंटिंग बनाया हुआ है।

और दीवार पर कुछ पेंटिंग हैं किए गए।

ये जो जगह है ये मट्टी खुदाई का जगह है जहाँ पर --

जोकि उसको उठते हुए दिख रहे हैं।

और यहाँ टोटल तीन लोग हैं।

और चारों तरफ पेड़-पौधे लगाए हुए हैं।

जोकि इस घर को ढका हुआ है।

यहाँ पर एक गाड़ी रखा हुआ है।

और एक कार की रिपेयरिंग हो रही है।

ये एक दुकान का सीन है जहाँ पर जिसके आसपास दो दुकान हैं।

एक दुकान पर लिखा हुआ है माही पेट शॉप ।

जानवर पाले जाते हैं।

जहाँ जिसकी बेडशीट तीनों अलग-अलग है।

और यहाँ एक बोतल रखा हुआ है जिस बोतल में--

जो कि बढ़ रही है और बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है।

जहाँ पर डांस बच्चों को सिखाया जाता है।

और यहाँ पर सभी बच्चे लाइन लगाकर--

इसके इनके पीछे बैलून को सजाया गया है।

लड़के अपना एक्सरसाइज करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

यह एक रूम का सीन है जहाँ पर--

बेडशीट है वो भी उजले रंग का है और यहाँ रेड कलर की--

ये एक रेस्टोरेंट का--

चित्र बनाई गई है दीवारों पर जोकि काफी ज्यादा--

और यहाँ जो ग्रिल है वो ग्रीन कलर का है और इसको --

यहाँ पर रनिंग मशीन और कुछ मशीन --

बाहर एयरपोर्ट का सीन है जहाँ पर--

क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे--

ये एक दुकान का मतलब खाने-पीने का दुकान है।

और यहाँ पर कुछ लोग--

कंपटीशन के लिए तैयार किया जा रहा है।

बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं।

की डेकोरेटिंग मतलब घर का डिजाइन बहुत ही सुंदर किया गया है।

उसके उस साइड एक ऑरेंज कलर की बस खड़ी है।

ये एक सिनेमा हॉल का सीन है।

बड़ा सा पर्दा है जो कि वाइट रंग का है।

यह एक मैकेनिक का दुकान है।

बहुत सारे सामान मिलते हैं।

ये एक ऑफिस का जगह है जहां पर एक।

कंप्यूटर रखा गया है।

यहां पर टेबल जो है।

डिलीवरी बॉय का बाइक लगा हुआ है बहुत सारा।

बनाया हुआ है पुतला बनाया हुआ है जो कि घोड़े पर सवार है।

यह एक हॉल का सीन है जहां पर।

ये एक टेबल है जिस पे बहुत सारा कॉपी।

बॉटल है जो कि काले रंग की रखी गई है।

तार है जो कि चार्जर है।

ये एक पेड़ के नीचे का सीन है जहां पर बहुत सारे कमरे --

जो कि पलट कर रखे हुए हैं।

और ये सारे गमले मिट्टी के हैं।

बहुत सारे पटरे बिछा कर--

मजदूर है जो कि काम करते हुए दिखाई दे रहे है।

ये एक प्लेग्राउंड है जहां पर--

व एक मैदान है जहां--

पेड़ पौधे हैं और एक टावर भी है।

महल है जो कि जहां पर बहुत टेस्टी टेस्टी बिरयानी मिलती हैं।

आते जाते खरीदारी करते नजर आ रहे हैं।

आपस में इकट्ठा होकर बातचीत करते--

घर को ढालने में लगे हुए हैं।

चारों और पटरा लगा हुआ है।

यह एक रास्ता है जो कि रोड तो नहीं है।

ये एक डांस परफॉर्मेंस है जहां पर बहुत सारी नर्तकियां--